साइकिल खड़ी हुई है गाय चर री है मैदान है हरी घास है पेड़ लगे हुए है नद्दी है।

नीचे में सीडडीया है गमले रखें हुए है उनमें फूल लगे हुए है बिजली के तार है।

सामने स्कूल है वहाँ पे बच्चे है जा अंदर जाने का गेट है ऊपर खिड़कियां बनी हुई है।